यह एक मिठाई की शॉप है यहां पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी --

जहां पे बहुत सारे फाइल्स उपलब्ध हैं और बहोत ही--

कलरफुल फाइल्स यहां मौजूद है।

यह एक बगहा का रेलवे ट्रैक है यहां पे दो--

यहां हड़े भरे पेड़ भी लगे हैं।

बाहर कुछ चेयर लगे हैं कुछ साइकल लगे हैं और एक रेत भी का टीला मौजूद है।

पदयात्रा कर रहे हैं उससे पहले दो बच्चियां--

यहां एक बहोत ही बड़ी फ्रिज भी नजर आ रही है।

यहां पे एक बहोत ही डब्बे रखे हुए हैं जो दवाइयां और लिक्विड्स के--

और सामने में एक दुकान है जो सिम कार्ड का दुकान प्रतीत हो रहा है।

बैठे हुए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा--

यह एक घर नजर आ रहा है।